और यहां आपस में कुछ लोग बातें भी कर रहे हैं।

यह एक पहाड़ का दृश्य है। सामने की तरफ एक घर बना हुआ है। आस पास ह--

ना रहे हैं एक औरत खड़ी है जिसने साड़ी पहेनी है।

गेट पर लॉन्ड्री लैब लिखा हुआ है।

इंटरव्यू चल रहा है साइड में टी_वी भी लगी हुई है।

एक हग्गीज़ की रोड लगी हुई है।

यहां एक लड़का भी खड़ा है जो आर्डर दे रहा है।

सामने कुछ रैंके लगी हुई है रैंकों पर सामान रखे हु--

और आसमान में सफेद और नीले बादल छाए--